उस पर कुछ सीनरी दिखाई दे रही है एक नील रंग की सीनरी दिखाई दे रही है।

कुछ बंधियां- सी दिखाई दे रही है और बिजली के खंभे लगे हैं।

उस के आगें लाल रंग की गाड़ी ठाडी है चार पहिये की।

एक मोरा से बधी है भाइट से।

लाल रंग का भी परदा सी लगी है।